और और इसके बगल में एक दरवाजा लगा हुआ है और दरवाजे के ऊपर एक पोस्टर चप --

इधर उधर देख रहा है तो कोई हिरन कुछ खा रहा है और जंगल के आस पास एक जाली के द्वारा बाउंड्री बनाई गयी है।